शांत जगह है जहा पर एक बहुत ही सुन्दर घर बना हुआ है और वो घर थोड़े से पुराने होने की वजह से ईमारत के जैसे लगा रही है और ये दूर दूर में पहाड़ भी नजर आ रहे है जो की पूरा ही ब्लू ब्लू है और स्काई पूरा ब्लू और वाइट में कम्बाइन हो गयी है।